रखे हुए हैं एक पानी की बॉटल भी नजर आ रही है।

ड्रेस पहने हुए हैं और दूसरी डममी येलो कलर की डममी पहने हुए हैं।

इस चित्र में एक पार्क आ रहा है।

और बहुत सारी चॉकलेट टमए बॉक्सेस में रखी हुई है।

पीछे कार्टून नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र नजर आ रहा है जिसमें--

पगड़ी लगाकर कुछ कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं।

इस चित्र में एक मल्टी दिख रही है। नीचे बहुत सारी शॉप खुली हुई है। एक एक्टिवा दिख रही है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं पीछे--

डॉक्टर बैठे हुए हैं जो दवाइयां दे रहे हैं बीपी चेक कर रहे हैं बीपी की मशीन दिख रही है।

आदमी भी नजर आ रहा है जो थैली पकड़ कर जा रहा है।

ये एक खेत नजर आ रहा है जिसमें--

और एक बैनल भीलगा हुआ है।

साइड में कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

अपनी सेविंग कराते हुए दिख रहे हैं और दो लोग करा रहे हैं।

जिसमें सेंटर में ऊपर से बल्ब दिख रहा है।

और ग्रीन कलर की चेयर और टेबल ब्राउन कलर की टेबल नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक नर्सरी का बोर्ड दिख रहा है जिसमें उसका कांटेक्ट नंबर और सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं।

इस तस्वीर में दो ब्रेंच रखी हुई दिख रही हैं।

एक बाइक भी दिख रही है।

एक्सरसाइज करने वाली और एक बिंडु भी दिख रही है।

और कुछ लोग भी खड़े हुए हैं एक एक्टिवा भी नजर आ रही है।

बेडरूम नजर आ रहा है जिसमें टू पिलोज भी दिख रहे हैं टू ब्लैंकेट्स --

तस्वीर है इस तस्वीर में चिकित्सालय केंद्र दिख रहा है।

इसमें एक पेड़ भी दिख रहा है।

नीचे का फ्लोर पूरा क्लीन दिख रहा है।

सामने बहुत सारे साइड में गेट लगे हुए हैं।

एक ए_सी नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जिसके नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये हरी मिर्ची बहुत सारी हरी मिर्ची पड़ी हुई हैं एक आदमी उसको क्लीन कर रहा है।

सामने एक कैरट रखी हुई जिसमें आलू रखे हुए हैं बगल में एक पन्नी में और मिर्ची रखी हुई है।

ये एक पार्क दिख रहा है जहां एक पेड़ दिख रहा है एक शेड दिख रहा है ब्लू आसमान दिख रहा है ग्रीन पूरी जमीन दिख रही है।